जहां ए_सी लगा हुआ है और ये--

अ कॉमर्स की कोचिंग क्लासेस दिख रही है।

अ और ये रोड की बहुत ज्यादा चौरा है।

म्म दिख रहा है उसमें दो लैंप झ झूल रहे हैं सामने में एका--

यहाँ मुझे कुछ बछियां डांस करते हुई भी देख रही है पीछे और सफेद कलर का एक अ स्टेज टाइप का बना हुआ है जिस पे --

अह छात्र बैठे हुए हैं बीच में एक टीचर दिख रहा है जो कि पढ़ा रहा है उन्हें।